सामने रेड कलर का एक खंभा।

वहाँ पे अ झासी की रानी घोड़े पे बैठी हुई हैं और हाथ मै तलवार ली हुई हैं।

और वहाँ पे तीन लोग बैठें हुए हैं और ओ पिज़्ज़ा खा रहें हैं।